यहाँ पे स्टेज बना हुआ है और यहाँ पे ब्लैक पर्दा है और यहाँ पे जो है तीन लेडीज़ बच्चे छोटे- छोटे ख --

लेडीज अ स्कर्ट टांगा हुआ है बोहोत खूबसूरत - खूबसूरत और यहाँ पे स्वेटर भी रखा हुआ है।

पलाई रखा हुआ है और उस पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे संवर कर लोग काम कर रहै हैं छड़ बिछाया जा रहा है और --

एंड जिला अधिकारी जिला कोरबा लिखा हुआ हैं।

आकाश झूलना है जो झूलते है राउंड वाला और यहाँ पे खम्भा --

यहाँ पे कुर्सी लगा के कुर्सी दिख रहा है और यहाँ पे लॉन्ड्री लिखा हुआ है और यहाँ पे ड्राई क्लीन लिखा हुआ है यहाँ पे कपड़े भी लाते है और यहाँ--

और डिस्को लाइट भी लगा हुआ है और दो वॉचमेन बैठे हुए है।

रखा हुआ है विकाश अधीक्षक अधिकारी कार्यालय लिखा हुआ हैं।